और यहाँ पर काफी ज्यादा व्यक्ति भी नज़र आ रहे हैं व्यक्ति खड़े हुए हैं एक व्यक्ति दौड़ रहा है।

और एक खंभा है जिसका कलर ब्लैक है।

पौधे हैं जिनमें फूल निकल आए हैं कुछ में फूल नहीं है और पौधों की पत्तियों का कलर ग्रीन है।

यहां पे टाइल्स भी लगी हुई है टाइल्स का कलर रेड है जो दिवाल है दिवाल का कलर --

जैसे कि देख पा रहे हैं एक फंक्शन और चल रहा है जहां पर एक लेडिस है जो की--

और काफी ज्यादा व्यक्ति काम भी कर रहे हैं जो कि बैठे हुए हैं एक व्यक्ति जो खड़ा है उसकी जैकेट का कलर --